तो बहोत बड़ा का स्टोर है।

और यहाँ पर बहुत जंगली जानवर भी रहता है ये जंगल बहुत ही ज्यादा बड़ा भी है। .

यहाँ पर बहुत ज्यादा धान का खेती होता है ।

गाड़ी शोरूम है ये गाड़ी शोरूम में गाड़ी ठीक होता है और यहाँ पर ये एक स्कूटी गाड़ी है।